घर है न खुला है खुला हुआ है एरिया में बनाया है |

एक बड़ा सारा बड़ा सारा लाल रंग का --

ये ये कुछ कांच में है कुछ फाइबर के अंदर --